उसके सामने लाल कलर का ब्लैंकेट रखा है एक काला बैग रखा हुआ है सामने दीवार क्रीम कलर की है ऊपर दो --

यहां बिल्डिंग दिख रही है जो रंगीन कलर की है और बीच में एक पोस्टर लगा है। जिसके ऊपर दो चित्र--

हाउस लिखा है नीचे कुछ कपड़े टंगे हुए हैं और सामने--

ग्रीन कलर की नीचे कत्थई और नी नीचे--

एफ बी और नीचे रिजी के कान्हा एनसेंस लिखा हुआ है नीचे जी डी --

कान्हा इंसेंस लिखा है और कुछ पोस्टर लगे हुए हैं अंदर बहोत सा सामान--

बहोत सारी मोमबत्ती दिख रही हैं और एक टेंट तना हुआ हैं जो नीला और हरा कलर का है।

नीले कलर की बॉर्डर है और अंदर दो आदमी दिख रहे हैं और अंदर पूरा ब्लैक एंड वाइट --

सामने बहुत सारी मोटरसाइकिल दिख रही हैं और एक नीली स्कूटी खड़ी हुई है जिसमें नैंसी लिखा--

जमीन दिख रही है और नीचे टैंक भी रंगी सफेद है और--

सफेद और पिंक कलर की पट्टी बनी हुई है।

नीली और कथई दिख रही है ऊपर आसमान भी नीला और सफेद दिखाई दे रहा है सामने बहुत सारी महिलाएं और--

चैंबर्स और बहुत कुछ लिखा हुआ है साइड में एक सफेद खिड़की बनी हुई है और नीचे--

यहां दूसरक पट्टी दिख रही है एक नीली एक ऑरेंज कलर की है और ऑरेंज कलर की के ऊपर छत ग्रीन कलर की है और नीले कलर के --

यहां एक लड़का दिख रहा है जो फोटो खींच रहा है।

बैठे हुए हैं ऊपर छत में रंगीन गुब्बारे लगे हुए हैं और दोनों साइड --

के कुरकुरे छपे हुए हैं नीचे राहुल --

देख रहा है साइड में कुछ थैली दिख रही है ऊपर छत में लाइट लगी है।

रेक बने हैं जिसमें गले की डमी है जिनमें बहोत सारे हार मंगलसूत्र--

यहां एक टेबल है जिस पर ग्रीन चादर है जिसके ऊपर रंगीन--

है ऊपर नीम सेलून लिखा हुआ है और नीचे आदमी का सिर के पोस्टर छपे हुए हैं।

यहां बहुत सारे घर दिख रहे हैं जो एक ही डिजाइन एक ही कलर --